इसमें एक मालवाहक सड़क पर खड़ा हुआ है।

में मुझे बाजार दिख रहा है। सड़क दिख रही है। इसमें बहोत सारी दुकाने लगी हुई हैं।

बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

रेल की पटरियाँ दिख रहीं हैं। रेल की पटरियों के बीच में गिट्टी दिख रहीं हैं।

और पूल के सामने कुछ जगह में घास और कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

पेट्रोल पंप के सामने कुछ एरिया में थोड़ी सी हरी-हरी घास दिख रही हैं।

बही खातों के कवर लाल हैं औ --

एक स्वास्थ्य शिविर दिखाई दे रहा है।

रजिस्टर मैं कुछ लिख रही है --

के बाजु में कुर्सी पर एक आदमी बैठा है।

और इन बिल्डिंगो के सामने एक छत पे छत है।

स्टेज पर लाल और सफ़ेद कलर के गुब्बारे हैं।

इस स्टेज पर बहुत सारे लोग --